यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पे बॉक्स भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर येलो है ।

ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है| लोगों ने ब्लू - ब्लैक कलर के कपड़े पहन--

बोट में कुछ लोग बेठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और पहाड़ी भी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधा भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।